यहां पर एक कपड़ो का ड्राय क्लिनर्स केंद्र दिखाया जा रहा है।

कुछ पेड़ है कुछ केसर बर्फी मलाई बर्फी दिखाई जा रही है अंदर बहुत सुंदर तरीके से दुकान सजाया गया हैं।